नीचे बहुत बड़ी मैट बिछी हुई है ग्रीन रेड मैट बिछी हुई है बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं बहुत भयंकर।

बहुत सी जगह पड़ी हुई है दुकान टा एक जो है बस खड़ी है।

दो तीन आदमी खड़े हुए हैं बहुत पेड़ लगे हुए हैं | लम्बी लम्बी लगे हुए हैं |

खुला आसमान दिख रहा है यहाँ वाइट कलर के फूल लगे हुए हैं ब्लू फूल लगे हुए है और रेड फूल लगे हुए हैं ।

हम्म सूर्य दिख रहा है संतरे कलर का और यहाँ बहुत सारे चारो तरफ पेड़ पेड़ लगे हुए हैं हरे हरे पेड़ लगे हुए हैं ।

पूता हुआ है लगी हुई है | टेबल लगी है उसमे तीन मूर्ति रखी हुई हैं |